इसके बाहर दो आदमी और एक औरत फोटो खींचवा रहे हैं। इसके कुछ कुछ आदमी बात कर रहे हैं। इस आदमी के पड़ोस में एक लाइट रखी हुई है जो जल रही है।

यहां पे एक बीचो बीच में बहोत अच्छा फुआरा है जहां से पानी बेह रहा है। इसके आस-पास बहोत अच्छी लाइटें लगी हैं और बहोत लोग घूम रहें हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ इसके पड़ोस में दो पेड़ है जो हरे-हरे है और यह बोहोत ही अ- यहाँ पे वातावरण बोहोत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे दो चिड़िया उड़ रही हैं।

इस यहाँ पे एक दो सूखे पेड़ लगे हुए है यहाँ पे पानी बह रहा है | पानी के अंदर बहोत बड़े बड़े पत्थर भी हैं |

रंग बिरंगी दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक औरत कुर्सी डाले हुए बैठी है यहाँ इसके पीछे दुकान है।

इसके पीछे एक तख्त पड़ा हुआ है इसके आगे बहोत अच्छी घास उगी हुई है |

इस कॉलेज के आगे एक मैदान पड़ा है जिसमें कुछ औरतें लेटी हुई हैं और कुछ खेल रही हैं और कुछ हस हस में बात कर रही हैं इसके अन्दर हरियाली बहुत अच्छी है।

यह एक ताज महल की तरह नजर आ रहा दिख रहा है। इसके आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।